यह एक पेट्रोल पंप है यहाँ पर लोग पेट्रोल भरवाने के लिए आते है गाड़ी में जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तब लोग यहाँ पर आते है।

यह बहुत सुन्दर पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है और यहाँ पर गुब्बारे से सजाया हुआ है ऐसा लगता है की पेट्रोल पंप को नया नया शुभ आरम्भ किया गया है बहुत सुन्दर पेट्रोल पंप है। .

ओ_टी_सी_डी_डी ऐसा टाइप का कुछ लिखा हुआ है आनंद धारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है यहां पर लगता है कुछ उत्सव मनाया जा रहा है बहुत सारे लोग भी इकट्ठा हुए --